यह एक मकान का घर है जिसके आगे में बहुत बड़ा बुके टाइप का गुलदस्ता बना हुआ है।

यह फुटेज किसी मॉल का लग रहा है।

इस मॉल के नीचे एक आदमी--

कुछ लेडिज लोग डांस कर रहे हैं।

उसके सामने टेबल है जिसमें की दो आदमी बैठा हुआ है।

यह दुकान देखने में बहुत अच्छी लग रही है उसके अंदर बहुत सारा सामान--

इसके ऊपर में लाइट भी लगा हुआ है और एक पंखा भी दिख रहा है।

यह फुटेज किसी कॉलेज का लग रहा है जिसके बाहर में बहुत सारा बच्चा लोग--